यहाँ पर में देख पा रही हूं बहोत सारे गमले रखे हैं उनमें फूल ल लग रहा है बहुत तरह-तरह के फूल हैं बहुत सुंदर लग रहा है ये फूल।

और पेड़ भी है एक केले का पेड़ भी दिख रहा है।

यहीं से खिलौने खरीदूंगी।

लोग घूमने जाते हैं हम भी जाएंगे कभी--

केंद्र है यहां पर न्यूज़ --

इस लिए रखी है लाइटिंग --

वो बहुत ध्यान से काम कर रहा।